इस तस्वीर में हमे एक कमरा दिखाई दे रहा है।

जिस पर बहुत ज्यादा ही भीड़ दिखाई दे रही है दोनों तरफ ऊँची-ऊँची इमारते है ऊपर एक नीला आसमान है।

एक ही तरह के कपड़े मैं है और वह कुछ कार्य करते हुए प्रतीत हो रहे है।

इस तस्वीर में हमें एक सफ़ेद रंग की इमारत दिखाई पड़ रही है जिसका एक मुख्य द्वार नीले रंग का दिखाई पड़ रहा है।

जिसमें कुछ लोग घूम रहे हैं और इमारत के सामने एक हरे रंग का पेड़ लगा हुआ है।

जिसमें एक किसान अपने फसल को देख रहा है।